यहाँ पे बहोत सारे स्कूटी लगे हुए हैं और उसके बगल में एक आदमी है और यहाँ पे पार्किंग है बाइक सब का और यहाँ पे सभी बाइक पार्क होते हैं और बाइक करते हैं ।

यहाँ होता है बहुत अच्छा दिखने में यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पे यदि यहाँ होता है अ इतना --

बहुत यहाँ पे सक्सेसफुल टीचर्स भी होता है बहुत बढ़िया यहाँ पे और --

ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो की बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं और यहाँ पे एक गुलाब का फूल है और यहाँ पे पपीता का गाछ है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी --

ये एक छत है जहाँ पे ढालिया हो रहा है जो की बहुत बढ़िया दिखने में लग रहा है ब्यूटीफुल सीन है और यहाँ पर बहुत अच्छे देखने में लग रहा है ।

यहाँ पे पहाड़ का लोकेशन है जो की बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पे एक भी है जो की बैठा हुआ है खोफनाक तरीका से यहाँ पे बहुत बड़ा एक पत्थर है जो की बहुत डरवाना देखने में लग रहा है।

और यहाँ पे डेली के बहुत अच्छे बस लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं बस चढ़ने के लिए और डेली के डेली बहुत भीड़ लगता है इस बस स्टैंड पर ।

ये एक तालाब है जहां पे बहुत सारे पानी आ गए जो कि बाढ़ आ गया पूरा लगता है पानी यहां चारों तरफ से घिर चुका है और ये बाढ़ का नजारा है जो कि बहुत डेंजरस लग रहा है।

और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आत --

ये एक स्कूल है जहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है एक आ एक बच्चा अपना प्रोजेक्ट बना रहा है दूसरा बच्चा भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पर बहुत सारे लड़के प्रोजेक्ट बना रहे --

और ये बहुत बड़ा झूला बनने जा रहा है जो की अभी कंस्ट्रक्शन चालू ही --